ये स्पिक में बहुत सार रंग बंगे गु गुवारे दिख रहे हैं।

और इसके पास एक के पास एक लड़का है वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।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

और कुछ वर्कर काम कर रहे दिखाई दे रहे हैं ।

ये पिक अ एक अ जिम की लग रही है इसमें एक्सरसाइज कन्ने वाली मशीने लगी हुई दिखाई दे रही है।

ये एक रेस्टोरेंट बार की पिक दिख रही है।

इसमें एक दो कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं।

और उसके पास चार लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एलुमिनियम के दरवाजों के शीशों पर कपड़े --

ये किसी स्कूल की दिख रही है।

जिसमें रंग बिरंगे कपड़े दिक रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

रेस्टोरेंट की लग रही है जिसमें रेड कलर की चेयर दिखाई दे रही है और एक ब्लैक कलर की चेयर दिखाई दे रही है।